नमस्कार दोस्तों फाइल्स से डेटा लोड करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत होने पर आप यह करने में सक्षम होंगे फाइल्स से डेटा रीड करने में जिसमें डेटा का एक कॉलम हो डेटा के विविध कॉलम्स रीड करने में जो स्पेसेस या अन्य डीलिमिटर्स से विभाजित हों
टर्मिनल पर जाते हैं और इपिथॉन हाइफेन पाइलैब का इस्तेमाल करके आईपाइथन शुरू करते हैं
अब फाइल primesटीएक्सटी के साथ शुरू करते हैं जोकि लोडटीएक्सटी कमांड का इस्तेमाल करके एक कॉलम में अभाज्य अंकों की एक सूची रखता है
कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आप फाइल primesटीएक्सटी का सही पाथ दें
हमारे उदाहरण में फाइल स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश primesटीएक्सटी के रूप में प्रस्तुत है
अन्यथा फाइल को लोकेट करने और उसका कंटेंट पढ़ने के लिए हम कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं
अतः टाइप करें कैट स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश primesटीएक्सटी अब इस सूची को वेरिएबल प्राइम्स में रीड करें
अतः टाइप करें प्राइम्स लोडटीएक्सटी कोष्ठकों के अंदर सिंगल कोट्स में स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश primesटीएक्सटी प्राइम्स अब अभाज्य संख्याओं का एक क्रम है जोprimestxt में सूची बद्ध है
अब प्रिंटेड क्रम को देखने के लिए हम primesप्रिंट प्राइम्स टाइप करेंगे अतः टाइप करें प्रिंट स्पेस प्राइम्स
हम देखते हैं कि सभी संख्याएँ एक पीरियड के साथ अंत होती हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि यह संख्याएँ वास्तव में दशमलव के रूप में पढ़ी जाती हैं
अब फाइल pendulumटीएक्सटी को पढ़ने के लिए लोडटीएक्सटी कमांड का इस्तेमाल करते हैं जो डेटा के दो कॉलम्स को रखता है
यह फाइल पहले कॉलम में पेंडुलम की लम्बाई रखता है और दूसरे में अनुरूपी टाइम पीरियड
ध्यान दें यहाँ लोडटीएक्सटी को रोस की बराबर संख्याएँ रखने के लिए दोनों कॉलम्स की आवश्यकता है
इस फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए हम कैट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं
अतः टाइप करें कैट स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश pendulumटीएक्सटी अब डेटा को वेरिएबल पेंड में रीड करते हैं
फिर से यह माना गया है कि फाइल स्लैश होम स्लैश फोसे में है
अतः टाइप करें पेंड लोडटीएक्सटी कोष्ठक के अंदर सिंगल कोट में स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश pendulumटीएक्सटी अब वेरिएबल पेंड को प्रिंट करें और देखें कि इसमें क्या है
अतः टाइप करें प्रिंट पेंड ध्यान दें पेंड प्राइम्स की तरह एक सरल क्रम नहीं है
इसमें दो क्रम हैं डेटा फाइल के दोनों कॉलम्स को सम्मिलित करता है
इसे दो अलग अलग सरल क्रमों में पढ़ने के लिए लोड टीएक्सटी के लिए एक अतिरिक्त आर्ग्युमेंट इस्तेमाल करते हैं
अतः टाइप करें ल ट स्पेस स्पेस लोड टीएक्सटी कोष्ठक के अंदर सिंगल क्वोट स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश pendulumटीएक्सटी कॉमा unpackTrue अब वेरिएबल्स ल और ट प्रिंट करें यह देखने के लिए कि इनमें क्या है
अतः टाइप करें प्रिंट स्पेस ल प्रिंट स्पेस ट ध्यान दें कि अब ल और ट pendulumटीएक्सटी डेटा फाइल के पहले और दूसरे कॉलम्स के डेटा को रखता है और यह दोनों ही सरल क्रम हैं
unpackTrue नें हमें एक जटिल क्रम के बदले दो अलग अलग क्रमों में दो कॉलम्स दिए
अभी तक हमने लोड टीएक्सटी कमांड के बुनियादी इस्तेमाल सीखें
चलिए एक उदाहरण देखते हैं
विडियो यहाँ रोकें निम्न अभ्यास करें और विडियो फिर से चलायें
फाइल पेंडुलम अंडरस्कोर semicolonटीएक्सटी को रीड करें जो pendulumटीएक्सटी का ही डेटा रखता है किन्तु कॉलम्स स्पेसेस के स्थान पर सेमी कॉलन्स से विभाजित हैं
यह देखने के लिए कि यह कैसे करें आईपाइथन हेल्प का इस्तेमाल करें
टर्मिनल पर वापस जाएँ

इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि फाइल जिसमें डेटा का एक कॉलम शामिल हो उसमें से लोडटीएक्सटी कमांड का इस्तेमाल करके डेटा को रीड करना
डेटा के बहु कॉलम्स को रीड करने के लिए जो स्पेसेस या अन्य डीलिमिटर्स से विभाजित हो
यहाँ आपके समझने के लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं
लोडटीएक्सटी केवल एक कॉलम के साथ वाली फाइल से डेटा रीड कर सकता है
सही या गलत
एक फाइल dataटीएक्सटी दी गयी है जिसमें डेटा के तीन कॉलम्स स्पेसेस से विभाजित हैं उसे अलग अलग 3 सरल क्रमों में रीड करें
एक फाइल dataटीएक्सटी दी गयी है जिसमें डेटा के तीन कॉलम्स से विभाजित हैं उसे अलग अलग 3 सरल कर्मों में रीड करें
और अब उत्तर 1
लोडटीएक्सटी कमांड फाइल जिसमें दोनों सिंगल कॉलम साथ ही बहु कॉलम्स हैं से डेटा रीड कर सकती है
फाइल जिसमें डेटा के तीन कॉलम्स स्पेसेस से विभाजित हों उसे तीन अलग अलग क्रमों में रीड करने के लिए हम लोडटीएक्सटी कमांड का ऐसे इस्तेमाल करते हैं एक्स लोडटीएक्सटी कोष्ठक के अंदर डबल कोट्स में dataटीएक्सटी कॉमा unpackTrue यदि फाइल जिसमें डेटा के तीन कॉलम्स डीलिमिटर्स से विभाजित हों तो हम उसे तीन अलग अलग क्रमों में रीड करने के लिए लोडटीएक्सटी कमांड में डीलिमिटर के लिए एक अतिरिक्त आर्ग्युमेंट इस्तेमाल करते हैं
एक्स लोडटीएक्सटी कोष्ठक के अंदर डबल कोट्स में dataटीएक्सटी कॉमा unpackTrue कॉमा delimiterin डबल क्वोट्स semicolon आशा करते हैं कि आपने आनन्द लिया और इसे लाभदयक समझा
मैं रवि कुमार आई आई टी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद